बहुत बड़े -बड़े वृक्ष हैं ।

बहुत अच्छे दिख रहे है ।

ये बहुत ज्यादा दूध देती होगी --

यह नदी अच्छी दिख रही हैं।

और एक दर्शन्य स्थल भी है।